सामने आपको एक बकुला दिख रहा है जो काले कलर का है।

जो हरे - हरे कलर के है आपको पानी दिख रहा है बगुला अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है।

सामने आपको बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

जो हरे कलर का है सामने एक साउंड बॉक्स रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

नीचे आपको ज़मीन दिख रहा है सामने आपको सड़क दिख रही है जो की सिल्वर कलर की है।

पीछे अब कुकूम्बस दिख रहै हैं तीन गुबबंज हैं किला लग रहा हैं पीछे बादल हैं।

एक-बड़ा झूला है बाकी सब छोटे-छोटे झूले लग रहे हैं पीछे आपको बहुत सारा खेत दिख रहे हैं।

लो हाथी का सूंड उठा हुआ है पीछे कुछ पेड़ - पौधे लगे हुए है जो देखने में बहुत --

सामने आपको दो बाइक नज़र आ रहै हैं बगल में यलो पन्नी नज़र आ रही--

जो ब्राउन कलर में है वह उसमें बहोत सारे क्वेश्चन रखी हुई है लाल और सफेद है।

सामने आपको एक नदी आ रही है जिसमें पानी है ऊपर आपको सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है जो ऑरेंज और ग्रे कलर में हैं।

सामने आपको एक सटर नज़र आ रहा है सामने जो गेट बना हुआ है कांच का बना हुआ है।

बिल्डिंग का कलर सफेद है रेलिंग लगी हुई है जो की ब्लैक कलर मे लगी--

सामने कुछ काम चल रहा है तीनो मजदूर नज़र आ रहै हैं मजदूरों ने गंजी पहन हुआ है लुंगी पहने हुए हैं।

कई सारे मिट्टी दिख रहै है बहुत सारे नीचे सरियो का ढेर बना हुआ हैं।

सामने आपको सिनेमा हॉल दिख रहा है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अद्भूत लाइटें दिख रही हैं।

एक महिला ने अपना सर के ऊपर एक फाइल उठाई हुई है जो देखने में अदभूत --